k3b के परिचय पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
k3b का interface और अनेक toolbars
आप ubuntu लिनक्स operating system पर k3b को कैसे download और संस्थापित करते हैं यह भी सीखेंगे और
* k3b प्रयोग करके sample file को burn करना
k3b क्या है
k3b एक cd/dvd burning सॉफ्टवेयर है
यह एक सरल tasks जैसे एक cd burning करने से एक जटिल tasks जैसे emovix cds burning करना क्रियान्वित कर सकता है
यह data audio या video cd/dvd बना सकता है
k3b सारे data formats जैसे html txt और अन्य supports करता है
यह सारे audio और video formats जैसे mp3 mpeg और अन्य supports करता है
k3b के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया www k3b org पर जाएँ
यहाँ हम ubuntu लिनक्स 1204 पर k3b 202 प्रयोग कर रहे हैं
आपको निश्चित कर लेना चाहिए कि आपने इस tutorial के लिए drive में एक cd या एक dvd डाली है
अगर आपके पास k3b संस्थापित नहीं है तो आप ubuntu सॉफ्टवेयर centre प्रयोग करके यह कर सकते हैं
ubuntu सॉफ्टवेयर centre पर अधिक जानकारी के लिए कृपया spoken tutorial website पर जाएँ
इस tutorial के उद्देश्य के लिए हमने desktop पर myk3bcd नामक एक folder बनाया है
इस folder में हमने 4 writer 1 impress और 2 calc की files भी सेव की हैं
अभ्यास के दौरान आप अपनी पसंद का कोई भी folder या file प्रयोग कर सकते हैं
अब k3b खोलते हैं
पहले dash home पर click करें जो कि आपके computer के desktop के ऊपरी बाएं कोने पर गोल button है
search box दिखता है
अब type करें k3b
k3b icon दिखता है
application को खोलने के लिए इस पर click करें
k3b window खुलती है
अब अपने आप को k3b interface के साथ परिचित कराते हैं
k3b interface अनेक विकल्पों के साथ main menu रखता है
main menu के नीचे शॉर्ट कट icons उपलब्ध हैं जैसे
new project open save format और filter
k3b दो main panels में विभाजित है ऊपरी और निचला panels
ऊपरी panel भी दो panels में विभाजित है
बाँया panel आपके computer में main folders को दिखाता है
और दाँया panel सम्बंधित subfolders को दिखाता है
निचला panel k3b में प्रयोग की जाने वाली सबसे आम क्रियाओं के शार्ट the icons को दिखाता है
आप इस panel पर उन प्रक्रियाओं के शार्ट कट icons जोड़ सकते हैं जो सामान्यतः प्रयोग की जाती है
add एक नया video cd project बनाने के लिए शार्ट कट icon जोड़ते हैं
निचले panel पर cursor रखें
context menu के लिए right click करें
new video cd project पर click करें
panel पर new video cd project के लिए शार्ट the icon दिखता है
अब एक data cd burn करते हैं
निचले pane पर new data project पर doubleclick करें
वैकल्पिक रूप से new project पर जाएँ और dropdown सूची पर click करें
new data project चुनें
बाएं panel से home और desktop चुनें
अब myk3bcd folder चुनें
यह ऊपरी दायें panel पर सारी files और folders को खोलता है
अब burned किये जाने के लिए एक data file चुनते हैं
अब इस folder से writer4 file चुनते हैं
writer4 file को निचले panel पर खींचते हैं और छोड़ते हैं
आगे बढ़ने से पहले यह निश्चित कर लें कि आपने drive में एक cd या dvd डाल दी है
burn पर click करें
दोबारा burn पर click करें
तीन भिन्न tabs के साथ एक window खुलती है
अब settings को default रहने दें
अतः default settings पर click करें
अब हम burning status और progress status देख सकते हैं
एक बार जब burning समाप्त हो जाती है तो cd स्वतः ही बाहर निकल जाती है
क्या यह आसान नहीं है
यह हमें k3b पर इस tutorial के अंत में लाता है
इस tutorial में हमने सीखा k3b interface और इसकी toolbars के बारे में
हमने यह भी सीखा कि k3b को कैसे संस्थापित और download करते हैं
k3b में अनेक विशेषतायें कैसे प्रयोग करते हैं
एक cd पर एक file कैसे burn करते हैं
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
एक audio file को एक cd पर burn करें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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं